जिसमें बिस्किट वगैरह नमकीन है।

और कई सारी चीजें खाने के लिए हैं और मसाले भी हैं चाट मसाले वगैरा और इसके अंदर लाइट भी जल रही--

इस तस्वीर में एक पैलेस है जिसका नाम शिवा पैलेस है और इस पैलेस मे ए_सी लगी हुई है।

और एक गड्ढा टाइप का भी बना है।

इस तस्वीर में ईंटों की एक सड़क है।

यह एक माल है और मॉल में हमने देखा की अह सबसे अधिक मात्रा में फल हैं।

और तालाब के सामने हमें कुछ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं पेड़ के पीछे छिपे हुए कुछ घर हैं।

ऊपर हमको आसमान भी दिख रहा है व्हाइट ब्लू कलर क--

इस तस्वीर में एक मैदान बना हुआ है जिसमें कई सारे हरे हरे पेड़ हैं और घास भी है।

छोटे छोटे पेड़ हैं और कहीं पर घास के मैदान में बीच में थोड़ा मिट्टी के गड्ढे थोड़े थोड़े हैं और सामने एक ट्रैक्टर है।

जो कि अपनी कॉपी बुक लेके कलर लेके बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं और एक लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं और उधर दो लोग खड़े हुए हैं।

पीछे बड़े बड़े पेड़ है और काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक रास्ते में एक लोग भी खड़े हुए हैं।

इसमें लाइट भी जल रही है रेड कलर है ब्लू कलर है व्हाइट है कई सारे कलर है और भी झूले हैं।

और इधर कुर्सी भी पड़ी हुई है महिला के पास छोटी कुर्सी स्टूल है और बाउंड्री पर डलिया गुलदस्ता सजाने वाला ये सब चीजें रखी हुई हैं।

और इस शोरूम के ऊपर तनायरा भी लिखा हुआ है इधर से लड़कियां भी--

गमले स्टैंड में भी रखे हैं और लड़कियां भी खड़ी हैं एक आदमी भी है।

और एक दरवाजा भी दिख रहा है रेलिंग लगी हुई है।

इसमें बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और उधर ट्रांसफर का एक खंभा है ट्रांसफार्मर का--

तस्वीर में एक माला है फूलों की जो कि ऊपर लाइट लगी हुई है टीन के सहारे उसी पर वो लटकी है।

गेट है। उसके अंदर भी और भी दरवाजे दिख रहे हैं और यह मकान जो है वो ईंटों का बना हुआ है।

और बहुत पुराना इस वजह से इसमें हरे हरे सब पेड़ उग आये हैं इसी दीवार पे।

और इस कमरे के अंदर इधर कुर्सी है टेबल है और इधर एक छोटा सा मंदिर है दीपक जल रही है उस--